बहुत बड़ा शहर है जिसमे बिल्डिंग बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

थम्सअप भी है सेवन अप भी है कोको कोला है।

बल्ब है पेन भी है जिसमें बहुत सारे सामान है एक तरफ--

ए_टी_एम से पैसा निकल रहा है।

व्हाइट शर्ट पहना है ब्लू जींस पहना है जूता पहना है मोजा पहना है हाथ में बैंड पहना है।

बिजली का तार भी है रेलवे ट्रैक भी है।

नीचे पाइप बिछाया हुआ है पानी के लिए।

भगवान जी का फोटो टंगा हुआ है ट्यूबलाइट है।